कुछ पहिए भी है यहां पे कुछ व्यक्ति भी है।

यह एक डाकघर का दृश्य है जिसमें काफी सारे व्यक्ति अपने काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक क्लासरूम का दृश्य है जिसेमें काफी सारा स्टूडेंट पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है।

एक प्लेट का दृश्य है जिसमें चिकन का पकोड़ा रखा हुआ है।

यह एक हॉस्पिटल का दृश्य है जिसमें दो काउंटर दिखाई दे रहे है।

यहां पे स्टील के कुछ जग और कुछ गिलाशे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे तीन सीढ़ियां भी बना हुआ है इसके बगल में बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बहुत सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं और इस हॉल में बहुत सारा चेयर नजर आ रहा है जिसमें व्हाइट कलर के कपड़े लगे हुए हैं।

यहां पे एक टीचर खड़ी है और इस ग्राउंड में काफी सारे बच्चे और काफी सारे व्यक्ति भी हैं।

इस में बहुत सारे नट और बोल्ट लगे हुए हैं और यहाँ पे एक बेंच रखा हुआ नज़र आ रहा है।

यह एक लड़के का दृश्य है जो की झूला झूलते हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पर लाइट्स और पंखे भी लगे हुए हैं।

यह एक मस्जिद का दृश्य है जिसके ऊपर काफी बड़ा एक गुंबद लगा हुआ है।

इसमें ब्लैक कलर का कुर्सी दिख रहा है इस टेबल में दो नमक का डब्बा रखा हुआ नजर आ रहा है।

और बहोत सारे बैनर्स भी लगे हुए हैं जिसमें एक में आई कोल्ड हैव --